काला है यहाँ पर एक व्यक्ति ने नीले रंग की कमीज पहनी हुई है जो की कुर्सी पर बैठा हुआ है तथा यहाँ पर --

जैसा की में देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है जो की --

अ कुछ पंखा लगा हुआ है जिसका रंग भूरा है यहाँ पर एक कैची और पेन रखा हुआ है कैची का रंग नीला तथा --

जैसा की में देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक सूंदर सजावट दिखाई दे रही है जो पीले और लाल रंग के परदो द्वारा की गयी है।

जो हरे-भरे है पीछे बादलो का रंग काला है तथा--

यहाँ पर पीछे इमारते है जो भूरे रंग की है नीला - नीला परदा भी दिखाई दे रहा है।

बादलो का रंग आसमानी और साफ़ झंडा झंडे का रंग पीला है।

ये दिवार दिखाई दे रही है जिसमे भूरे रंग की छोटी - छोटी कुछ मु --

यहाँ पे जमींन का रंग काला है कुछ पाईप से बनी हुई डिज़ाइन बनी हुई जो--

यह महान पुरुष तथा यहाँ पर दिवार पर सफ़ेद और पिल काला रंग है।